यह एक थ्री वीलर रिक्शा है जिसका कलर ब्राउन है। यह एक टैक्सी की तरह है। यह थ्री वीलर है।

यहाँ हम देख सकते हैं की यहाँ एक बहुत बढ़िया बिल्डिंग है।

आउटलुकिंग में इसका रंग येलो भी शामिल किया हुआ है। ये एक मॉडर्न जमाने की स्कूटी है ।

यह एक मंदिर का द्रश्य है यहाँ मंदिर में भक्तों की लाइन लगी पड़ी है सभी भक्त चढ़ाना चढ़ाने आये है।

यह एक मंदिर का द्रश्य है यहाँ सभी देवियों की मूर्तियाँ लगी हुई और यहाँ सभी भक्त भी आये हुए है।

फूलों की मंडी लगी हुई है यहाँ लोग फूलों का व्यापार कर रहे है।

यह एक ऑफिस का द्रश्य है यहाँ बाहर बाइक्स लगी हुई है।